इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक ट्रक खड़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम ट्रक के पास में एक बहुत मोटा सा पाइप पड़ा हुआ दिख रहा है और एक बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर दूर पर बहुत बड़े-बड़े से --

पेड़ भी लगे हुए हैं। सामने की तरफ देखिए कुछ मकान बने हुए हैं। जमीन पर बोहोत सारी पन्नियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस्पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये दुकानें बनी हुई हैं जिसमें की आंध्र बैंक ए.टी.एम और एक्सिस बैंक ए.टी.एम का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर।

और बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और मैदान में किनारे की तरफ एक लड़का भी खड़ा हुआ दिख रहा है।

और बहुत सारी मेजे और कुर्सियां लगी हुई हैं मेजो के ऊपर देखिए कुछ पानी की बोतले रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पेड़ लगे हुए हैं यहां पर जाल के पास में एक बहुत सुंदर सा हिरण खड़ा हुआ दिख रहा है।

कपड़े से ढका हुआ है सामने अलमारी बनी है अलमारी पर भी सामान रखा हुआ है एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।